यह एक दुकान है यहाँ पे बहोत सारे --

और फिट लग रहे हैं और --

और काफी अच्छे लग रहे हैं और यहाँ पे दे --

और काफी सुंदर-सी नजर आ रहे हैं।

निर्माण हो रहा यहाँ बोहोत सारे --

आपकी लंबी हो रही हैं।

यहाँ पे फिर एक ये बिल्डिंगस नजर आ रहे हैं।